सामने की ओर एक गौतम बुद्ध की बहुत ही सुंदर मूर्ति है उनके आजू-बाजू में दो झंडे भी लगाए हुए है।

उसके सामने बहुत बड़ा टेबल है उस टेबल पर बहोत सारे दवाईयां और डब्बे रखे हुए हैं और बहोत सारे कागज भी हैं।

यहाँ पे नीचे की ओर जमीन है और वो जमीन पर बोरी भी रखी हुई है बहुत सारे लोग वहाँ पे हैं और ऊपर की तरफ एक मशीन भी है।

यहाँ पे नीचे की तरफ बहोत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और कुछ बच्चे सामने की ओर खड़े हैं।

यहाँ पे बहुत सारे लोग है पीछे की तरफ बहुत सारे ईटे पड़ी हुई है और एक आदमी टकोरे मे --

यहांपे सामने की ओर बहुत सारे लोग हैं और एक लड़के ने अपने सिर पर एक टोपी पहन के रखी है।

सामने एक आदमी खुर्सी पे बैठा हुआ है उसके सामने एक टेबल है बहोत सारे पैकेटस रखे हुए हैं।

लाउन को बहुत ही सुंदर लाइटों से सजाया हुआ है ऊपर की तरफ काला आसमान है।

यहाँ पे नीचे की ओर मिट्टी की जमीन है उस जमीन के ऊपर घास भी उगी हुई है और बहुत सारे लोग भी यहाँ पे है।